और कुछ लोग ग्लव्स भी पहने है दो लो--

मुझे बहुत सारे कपड़े देख रहे है कुछ आजु-बाजू टंगे है सामने टंगे हैं।

खुदा खुदा सा हैगा। स्टेट बाजु में कुछ --

और अंदर सामान रखे हैं और मीनर दिख रहा है। स --